इस इमेज में एक पर्वत की इमेज दिखाई गयी है पहाड़ पर खड़ा एक व्यक्ति पर्वत को हाथ लगाया दिखाया गया है।

ऊपर पत्थर दिखाए गए है एक व्यक्ति हाथ से पहाड़ को पकड़े दिखाया गया है रेड टीशर्ट ब्लैक --

पन्नी पहने हुए दिखाया गया है बस --

रेलिंग वाली यू ऊपर--

पोताई की गई है गार्डन दिखाया गया है सोसाप के पेड़ दिखाए गए है।

तार-जार दिखाए गए है बादल दिखाए गए है पेड़ लगे हुए है।

रेख पर सभी किराने का समान रखा दिखाया गया है बलून --

पूरा भीना भीना उदय होता दिखाया गया है नदी की किनारे पूल --

इस इमेज में एक ब्रंच पर --

इस इमेज में एक फर्श पर मछली बहुत सारी एक साथ डली दिखाई गयी है मछली कटर भी रखा हुआ है।

मंदिर की बाहर छोटी सी शेरों वाली माता की मूर्ति लगी हुई है मंदिर की बाहर रेलिंग लगी हुई है रेड कलर की चैनल लगी हुई है पर्दा--